यह एक बिल्डिंग है जहां पर रेंट पर रूम मिलता है।

यहां पे एक मजदूर दिखाई दे रहा है यहां पे एक रास्ता है।

और बहुत सारी मस्तियां करते हैं।

और इसके आस-पास बोहत बहु हरियाली है। जहाँ पर पेड़-पौधे बोहोत सारे लगे हुए हैं। इसके सामने एक बिल्डिंग है।

यहां पे रेल यहां पे इंडियन रेलवे नामक ट्रेन खड़ी हुई है।

ये गोरखपुर की बहोत फेमस मंदिल है गोरखनाथ| जहाँ पे खिचड़ी का मेला लगा हुआ है और ये मेला चौदह फरवरी तक लगा रहता है और यहाँ पे बहोत भीड़ होती है| जहाँ पे बच्चे बूढ़े और बहोत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ --

हरियाली भी बहुत अच्छी फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं तो लोग यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

और छत पर कुछ सामान्य हैं।

यहां पे नदी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है नदी के किनारे किनारे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और सेल्फियां लेते आप बहुत अच्छी सीन है।

ये एक पार्क है जहां पार्क के किनारे बहुत सारी बिल्डिंग है यहां पे --